दिखाई दे रहा है यहां पर एक अच्छा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

नजर आ रही है यहां पर अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगे हुए हैं।

लगी हुई नजर आ रही है यहां कस्टमर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और पंखे नजर आ रहे है यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक --

यह एक चित्र नजर आ रहा है जहां पर हरी मिर --

यह एक चित्र नजर आ रहा है जहां प देवा ऑटोमोबाइल नाम --

शाॅप नजर आ रही है पास में कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

जिसका नाम राजस्थान बुक्स एंड स्टेशनरी नजर आ रहा है।

यह एक रूम नजर आ रहा है जहां पर एक बेड --

जहाँ पर कुर्सियाँ टेबल बिछे हुए नजर आ रहें हैं।

यह एक तालाब नजर आ रहा है।

इसके चारों ओर हरियाली भी नजर आ रही है हरियाली --

गेट का कलर नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

दूध दही अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं यहां पर कुछ चिप्स भी पाए जाते हैं।

साथ में कुछ और व्यक्ति भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान का नाम कृष्णा फैंसी स्टोर है यहां पर अलग अलग फैंसी प्रोडक्ट --